और रास्ता एकदम सुनसान दिख रहा दूर-दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है यहां पर। अच्छा नजरा है देखने में।

ब्लू कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पेंट पहना है।

बहोत सारा लाइट दिख रहा है। बहोत सारा सजा के रखा गया है। बहोत सारे लोग हैं। बहोत अच्छा लग रहा है देखने में। रात का समय है।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई सलून का दुकान है। यहां पर एक आदमी जोकि कुर्सी पर बैठा हुआ है।

दुकान दिखाई दे रहे हैं और भी बहोत कुछ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक काला कलर की कार दिखाई दे रही है और --

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी ऑफिस का चित्र है। यहां पर बोहोत सारे --

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि यहां पर बोहोत सारे गाड़ियां है। कुछ पंडाल जैसा बना हुआ है।

और अंदर मे बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। बोहोत सारी --

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है की यह कोई कॉफ़ी शॉप है। यहां पर एक औरत बैठी हुई नजर आ रही है जोकि --

मछली मांस दिखाई दे रहा है जोकि बोहोत सारे लोग हैं। कुछ बेच रहे कुछ खरीद रहे हैं। बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।